नीचे एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की फोटो क्लिक कर रहा है तथा अंदर एक व्यक्ति जिसने रेड हाफ टी-शर्ट पहना हुआ --

पीछे भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिनका कलर गोल्डन है | निचे फर्श पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

यहां एक बस स्टैन्ड है जहां पर बोहोत सारे बसे खड़ी हुई है तथा अंदर टेबल पर व्यक्ति सोये हुए है जिन्होंने ऊपर चादर डाल रखी है कोने मे एक व्यक्ति----